चित्र में चट्टानें दिखाई दे रही है घना जंगल दिखाई दे रहा है कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे --

इस चित्र में घास उगती हुए दिखाई दे रही है कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है एक पंप्रेशर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।